इस फोटो के अंदर हम लोग एक बाइक का शोरूम देख पा रहे हैं सामने हम लोग एक बाइक देख पा रहे हैं जो ड्यूक है जो ऑरेंज कलर का है और वाइट कलर का है।

एक हम लोग ब्लैक कलर का मॉनिटर देख पा रहे हैं चेयर देख पा रहे हैं जो की ब्लैक कलर का है।

दीवाल का कलर इसका हम लोग येलो देख पा रहे हैं।

बॉक्स देख पा रहे हैं अंदर में कुछ चेयर देख पा रहे हैं।

यहां पर हम बोहोत सारे व्यक्तियों को देख पा रहे हैं महिला को देख पा रहे हैं।

हम लोग दो तरह का कुछ कलर का वाइट कलर का पिंक कलर का ग्रीन कलर का एक टब देख पा--

जिस महिला को देख पा रहे जो कि एम्म बालों में गजरा लगके हैं।

किसी ने यहां पर रेड कलर का कपड़ा पहना हुआ किसी ने व्हाइट कलर किसी ने ब्लैक कलर किसी ने पिंक कलर का--

गंजा टी शर्ट पहने हुए और ब्लैक कलर का पैंट पहने हुए इसके पीछे और भी लड़कों को--

इस फोटो का अंदर हम लोग एक बाजार देख पा रे हैं सामने में एक व्यक्ति को देख पा रे हैं।

बॉटल का फूल लगा हुआ है और हमलोग के एक नारियल का ये देख पा रहे है छोटा सा।

रे हं कांच का बना हुआ स्क्रीन टच में एक व्यक्ती को दे पा रहा हूं जो की लाल कलर का--

लकड़ी से बने हुए ऑरेंज कलर के साइड के जो दीवार में हमलोग देख पा रहे है व्हाइट कलर का है हम लोग बाल्टी देखकर जो ऑरेंज कलर का हैं।

व्हाईट कलर का शर्ट और ब्ल्यू कलर का जींस पहने हुए हैं साइड में हम लोग एक टेबल देख पा रहे हैं जो टेबल टेबल टेनिस का है।

व्हाइट देख पा रहे सीलिंग का कलर भी व्हाइट देख पा रहे सीलिंग में हम लोग दो --